नदी दिखाई दे रही है नदी में पानी बहता हुआ कुछ लोहे की रेली भी लगी हुई है कुछ टाइल्स लगी हुई छोटी छोटी